और साइकिल साइकिल का एक फ्रेम है ब्लू कलर का है।

जोकि ग्रीन कलर का उसमें स्पोक भी है वाइट कलर का सीट है जिसमे कभर लगा हुआ है और फ्रेम में भी कवर किया हुआ है।

कुछ कुछ झाड़ू भी रखा हुआ है कुछ टेबुल भी है रखा हुआ।

वॉल में जो वॉल में है कसे हुए और कॉर्नर में एक जो की अलमीरा लगा हुआ सामने में जो की ब्लैक कलर का है।

इस फोटो में एक सेनेटरी का दुकान है जो कि सामने में सुप्रीम कंपनी का तीन टंकी रखा हुआ है।

सामने बेसिंग भी रखे हुए हैं नीचे पाइप भी ग्रीन कलर के लिए कुछ कारपेट में है।

में कुछ कुछ रस भी गिरे हुए हैं साइड साइड में लगभग बहुत सारी जलेबी सूखे हुए भी हैं कुछ कुछ रस भी लगे हुए हैं उसमें।

साइड में कैप भी सब भी है कुछ कुछ जंपिंग वाला भी है।

ब्रश जीभी और चायपत्ती सामने येलो कलर का कुछ रेक में रखा हुआ है।

अभी एक छोटी सी दिवाल दिया गया वहां पे दो लड़की लोग बैठी हुई है लेकिन ब्लू कलर का स्वेटर पहनी हुई है एक तो पिंक कलर का पहनी हुई है एक साइड में जो की हर प्रकार की बात चीत करते हुए दिख रही है कॉलेज में।

कुछ कुछ कलर पेंसिल और कुछ कुछ बॉक्स भी रखा हुआ है जो की इंक भी रखा हुआ है ब्लू कलर का फेविकोल ।

इस फोटो में एक मैदान में बिजली का ट्रांसफार्मर जो बड़ा सा रखा रखा हुआ है।

मंदिर में जो ऊपर से खपड़ा लगाया हुआ है।

सामने में एक में रैक कुछ माला टाइप मे टगा हुआ है और बोरोप्लस है विको क्रीम भी है।

लाइट का पोल है बहुत ही लंबा जोकि पूरे ग्राउंड को कवर कर रहा है और लाइट --

इस फोटो में एक ए_सी मैकेनिक है जो कि ए_सी के बाहर वाला पार्ट को बना रहा है।

इस फोटो में एक हार्पिक का है जो की बड़ा पैक छोटा पैक कोलिन का है जो की बाथरूम में साफ सफाई होता है।

यहां पे एक टेबल रखा हुआ है जो की ब्लू कलर का है वहां पर प्लांट्स भी रखे हुए अलग अलग गमले में।

ये कुछ रेड कलर के है पिंक कलर के है येलो कलर के हैं ग्रीन कलर के--

इस फोटो में बिल्डिंग है एक उसके नीचे चार पांच आदमी है एक बच्चे हैं दो कार लगाया गया है।

ये कार लगा है एक उधर सामने भी रेड कलर का आदमी है।

रास्ते बनाए हुए हैं अलग अलग मिट्टी कट भी रहे हैं।